और यहां पे एक फैन है और सी.सी.टी.वी. कैमरे मौजूद है जहां एक चेयर भी और टेबल भी है।

और यहां बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मौजूद है जो इस प्रतियोगिता में भाग ले और टीचर भी मौजूद है यहां बहुत ही शोर यहां बहुत सारे पेपर बिखरे हुए पड़े हैं।

यह फोटो देखके पता चलता है कि यह कोई सरकारी बैंक का है। इसपे इंडिया पोस्ट पेमेंट का लोगो लगा हुआ है। यहाँ एक बाइक है।